इस ट्रक में बहुत सारा टायर है।

बगल में व्हाइट कलर का कूलर भी रखा हुआ है।

उसके जूते भी दिखाई दे रहे हैं ब्लैक कलर के।

ऊपर जाने के लिए सीढ़ी भी दिया हुआ है।

एक खिड़की भी लगा हुआ है। उसका ग्रिल भी है।

कुछ लोग बैठे हुए भी हैं कुछ लेडिस है कुछ जेंट्स हैं।

इसमें बहुत ही भीड़ है आजू बाजू कार और बाइक पार्क किया हुआ है।

कुछ लोग यह काम करते हुए दिख रहे हैं।

इस फोटो में बहुत सारे लोग कोई भगवान की मूर्ति को लेके जाते दिख रहे हैं।

इसमें बहुत सारा टेबल कुर्सी लगा हुआ है।

और पीछे में घड़ी भी है दीवार पे लगा हुआ --

एक टेबल भी दिखाई दे रहा है बाहर में--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

इस फोटो में बिरयानी का फोटो दिखाई दे रहा है।

खाने का पोस्टर लगाया हुआ है ऊपर मे-

इस फोटो में एक इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हो रहा हैं।

अंदर में छोटे छोटे गमले में पौधे लगे हुए हैं।